और घर के बाहर एक बैनर लगा हुआ है जो कि उसमें व्हाइट कलर की लिखी हुई है और जो बैनर है वो ब्लैक की कलर की है यह जो घर है वह ग्रीन कलर की है घर के सामने बहुत सारे सुपारी के पेड़ हैं।